साइड में एक टावर बना है। यहाँ से बहोत सारी बीजली की तार गए हुए हैं। यहाँ से एक लकड़ी का खम्बा भी दीख रहा है। यहाँ पे सूरज भी दीख रहा है।

यह एक बस स्टैंड दिख रहा है। यहाँ पे बोहोत सारी बसें खड़ी हैं जैसे कुछ ब्लू व्हाइट अलग-अलग बसें हैं।

साइड में खिड़कियाँ भी दिख रही हैं। झंडे येलो कलर के दिख रहे हैं। साइड मे एक मंदिर के ऊपर और एक झंडा ऊपर लहराता हुआ दिख रहा है।